बहोत सारे कार है व्हॉइट कलर की लगता है और एक खराब भी कार है और --

यहाँ पर बहोत सारे पेड़ है। पौधे वोधे लगे हुए है। पार्क भी बहुत सु सुन्दर लग रही है।

बी.एस.एन.एल का एक कंपनी है सर्विस है और पेड़-पौधे बड़का पेड़ लगा हुआ हैऔर बाइक है बी.एस.एन.एल बाइक अंदर लेके जा रहे है। लोहे की गेट लगी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है।